लाइट नज़र आ रही है जिसका रंग लाल दिखाई दे रहा है एक लोहे की जाली नज़र--

नज़र आ रही है जिसका रंग भी सफेद दिखाई दे रहा है इसके पास एक लकड़ी की कुर्सी दिखाई दे रही है उसका रंग--

दीवार का रंग गुलाबी नज़र आ रहा है नीचे जमीन नज़र आ रही है जिसका रंग भूरा दिखाई दे रहा है जिसपे--

यहाँ एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसमे की लाल रंग की कुर्सिया नज़र आ रही है आसपास भी लाल रंग की दीवारें दिखाई दे रही है।

एक लडके ने नीले रंग की शर्ट --